हरे भरे पेड़ पर नदी-नाले भी हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा बहुत ही सुन्दर नजारा--

ये तस्वीर को देख कर लगता हैं ये कोई स्कूल लग रहा होंगे यहाँ पे यहाँ पे कुछ लिखा भी लेकिन फोटो को थोड़ा एडिट किया हुआ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था की किस चीज का लग रहा हैं लेकिन

जो भी है यहाँ का व्यू देख सकते है बहुत ही मस्त लग रहा है स्कूल भी जो की बहुत अच्छा बनाया गया है साइड साइड पर कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं।

यह तस्वीर देख कर लग रहा हैं की यह कोई नदी का सीन लग रहा हैं जहाँ से जो की ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा हैं यहाँ जो जो बोट चलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो सब को बोट चलना भी सिखाये जा रहा हैं।

ढोसे के लग रहे हैं यहाँ पे कोई देख सकते हैं खाट जो की कितना बड़ा ही लग रहा हैं यहाँ पे जो की एक नांव दिखाई दे रहा हैं और बहुत सरे पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं साथ ही उस पार देख सकते हैं आप--